जहाँ पे बहुत सारी क्रेन रखी है लोडिंग वाली जो लोहे की है।

दो तिरंगे रखे हैं। फूल रखे हैं। भगवान की मूर्ति रखी है। सामने कुछ मकान बने हैं।

और पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आसमान भी नजर आ रहा है। साइड में हरी घास भी लगी हुई है।

और उसके हाथ में पेन रखा हुआ है कुछ पेन के बॉक्स पड़े हुए हैं जैसे लाल हैं।

ये एक बड़ी-सी गुफा दिखाई दे रही है जो पत्थरों की है।

यहाँ पे एक बड़ा सा नदी है और नदी के सामने एक बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है।

ककड़ी रखी है। प्याज दिखाई दे रहा है और नीम्बू भी है और साथ में चावल भी रखा हुआ है।

कांच में एक इंसान सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है खिड़की लगी हुई है।

पीछे लाल कलर के परदे और क्रीम कलर की दीवारे है एक चेयर भी रखी हुई है।

एक केक थोड़ा सा कटा हुआ है। साइड में एक सफ़ेद केक और गुलाबी भी रखा हुआ है। लाइट जल रही है यहाँ पे ।

ऊपर की दिवार पे सफ़ेद और नीला कलर दिख रहा है। ।

सामने की साइड पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है। जहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं।